यह एक रोड का दृश्य है जिसमें एक रेड कलर की कार खड़ी हुई है।

एक दुकान है जिसके ऊपर पीहू मोबाइल लिखा हुआ है।

यह बस स्टैंड का दृश्य है जिसमें एक बूढ़ा आदमी है जो जिसने व्हाइट कलर का स्वेटर पहना है।

घर के ऊपर दो पाइप है जिसका कलर रेड और आसमानी है।

सलाद है जिसमें खीर और प्याज रखा हुआ है प्लेट का कलर ब्लैक है।

एक पंघा है जिसका कलर ब्लैक है एक व्हाइट कलर की बल्ब है।

मस्जिद मे तीन डिजाइन दार दरवाजे हैऊपर मे चार खंभे हैं।

दुकान के बाहर एक कुर्सी रखा हुआ है बहुत सारे बाल्टी रखा हुआ है जिसका कलर पिंक व्हाइट रेड है।

स्कूल का बोर्ड व्हाइट कलर का है।

टेबल का कलर ब्लैक है कुर्सियों का कलर व्हाइट है।

ऊपर का दिवाल व्हाइट कलर का है एक पंखा है जिसका कलर ब्लैक है।

एक मसीन है जो ब्लैक कलर का है एक टेबल पे बहुत सारे रेड कलर का सामान रखा हुआ है।

बहुत सारे चप्पल है। एक चप्पल का कलर रेड है।

बैनर में श्री हॉस्पिटल अं व्हाइट कलर से लिखा हुआ है।

यह होटल के बाहर का दृश्य है होटल का कलर ब्लू और वाइट है।

होटल के बाहर का जमीन ग्रीन कलर का है एक आदमी खड़ा है।

होटल में एक ए_सी लगा लगा हुआ है ए_सी के नीचे लेट्स प्ले व्हाइट कलर से लिखा हुआ है।

ब्लैक कलर की बाइक में दो य एक बच्चे एक आदमी बैठा हुआ है।

पेड़ के पास एक तार टंगा हुआ है।

ये बिल्डिंग के पास एक बाल्टी भी रखी हुई है।

यहा बहोत सारी गाड़ियां खबड़ी है।